सोफा के पीछे कुर्सी लगल है उसके पीछे वेटर लोग है और बहुत सारे आदमी भी है झूमर है एक ऊपर बॉल बहुत सारे लगल है।

जिसमें बहुत सारे बांस लगे है एक बाइक है और उस उधर ए भी हाउस है ये बहुत बड़ा बिल्डिंग है।

दो बातख भी यहां पर है नदी में मछली पकड़ के खाने के चक्कर में लगल है ये बतख लो--